सामने ये जमीन दिखाई पड़ रही है जमीन का कलर ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रहा है पास में कुछ हरी घास भी दिखाई पड़ रही है सामने एक घर दिखाई पड़ रहा है घर का कलर नीले रंग में दिखाई पड़ रहा है और उसके पास एक बिजली का खंबा दिखाई पड़ रहा है और उस पर एक लाइट लगी हुई है।

पिक्चर में बहुत से पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं पत्थरों के ऊपर से झरना बह रहा है झरने का कलर औरेंज कलर में दिखाई पड़ रहा है नीचे पानी का कलर भी औरेंज कलर में दिखाई पड़ रहा है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है उसने पर्पल कलर की शर्ट पहन रखी है सामने कुछ पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं पेड़ का कलर ग्रीन कलर में है।

इस पिक्चर में सामने एक रोड जैसा बना हुआ है जो कि ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है सामने एक बोर्ड भी दिखाई पड़ रहा जो कि नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है सामने एक दरवाजा भी दिखाई पड़ रहा जो की व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहा सामने कुछ पेड़ भी लगे जो कि ग्रीन कलर और ग्रे कलर में दिखाई पड़ --

पिक्चर मे सामने एक टेबल पर एक पर्स और एक चश्मा रखा हुआ है बगल मे एक कैंची रखी हुई है कैंची का कलर ब्लैक कलर मे दिखाई पड़ रहा है सामने एक शीशा लगा हुआ है सामने एक आदमी बैठा हुआ है उसने एक हाथ मे मोबाईल फोन पकड रखा है पीछे रैक भी बनी हुई है।

पिक्चर में सामने एक रोड जैसे दिखाई पड़ रही है जिसका कलर ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है सामने एक पत्थर जैसा दिखाई पड़ रहा है जिसमे बहुत से कलर दिखाई पड़ रहे है जो कि ऑरेंज कलर ग्रे कलर पिंक कलर भी दिखाई पड़ रहे हैं नीचे कुछ घास भी दिखाई पड़ रही है सामने एक पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है और एक पहाड़ भी है।

चलो सामने एक स्विमिंग पूल दिखाई पड़ रहा है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है पानी का कलर ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है सामने कुछ घास दिखाई पड़ रही है घास का कलर ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है सामने एक छज्जा जैसा बना हुआ है उस पर कुछ लोग खड़े हुए है।

इस पिक्चर में सामने कुछ पेकेट्स रखे हुए हैं जिसमें हल्दी मसाले के पेकेट्स टंगे हुए हैं सामने एक रैक रखी हुई है।

चम्मच दिखाई पड़ रहा है एक प्लेट दिखाई पड़ रही है प्लेट का कलर व्हाइट कलर का है और उसमें कुछ खाने का सामान रखा--

दिखाई पड़ रहा है उससे ढलान में कुछ घास लगी हुई है वहॉं पर एक रबर पड़ी हुई है साइड में एक गमला दिखाई पड़ रहा है।

इस पिक्चर में एक मकान दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है। इसमें एक दरवाजा भी दिखाई पड़ रहा है साइड में कुछ पेड़ भी लगे हुए है जिनका कलर ग्रीन कलर में दिखाई पड रहा है। सामने एक खम्भा दिखाई पड़ रहा है पीछे एक घर और दिखाई पड़ रहा है जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है। पीछे कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

सामने एक क्रोस का साईन भी दिखाई पड़ रहा है इसके सामने बहुत से लोग दिखाई पड़ रहें है एक रिक्शा दिखाई पड़ रहा है।

सामने एक शटर दिखाई पड़ रहा है जो कि ग्रे कलर में दिख रहा है बहार साइड रोड दिखाई पड़ रही है वहाँ पर भी कुछ शटर दिखाई पड़ रहे है और वहा पे कुछ शॉप भी दिखाई पड़ रही है।

सामने एक ऑटो रिक्शा आते हुए दिखाई पड़ रहा हैं सामने एक बिल्डिंग जैसा बना हुआ हैं वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं साइड मे बिल्डिंग भी दिखाई पड़ रही हैं ।